यहां पर ग्रॉसरी आइटम्स मिलता है।

यहां पर एक बहोत बड़ा मंदिर है।

यहां पर नाइट का व्यू है और बहोत सारी ग्रीनरी है।

जो की फ्रेशर पार्टी है यहां पर--

तो जैसे कि आप देख--

यहां पर एक कार है जो कि कार को रखी है।

बहुत सारी अलग अलग प्रकार की--

ओपनिंग हुई है।